यहां पर मुझे पानी का खंडहर दिख रहा है और यहां पर बहुत ज्यादा पानी जमा हो रखा है और यहां पर कुछ बादल भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक आदमी है ओ उसको सही कर रहा है और उसपे डस्ट बहोत सारी आ रही है।

और एक तरबूज भी दिखाई दे रहा है और पूर्ण रूप से ऐसा नहीं हो रहा है पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है।